येल्लो कलर की कुर्ती और व्हाइट लेगिन्स पहनकर --

हॉल के बाहर लाल और हरे रंग की कार्पेट बिछी हुई है हॉल के बाहर तीन पोस्टर है और हॉल का दरवाजा शीशे का है जिसके पीछे एक छोटा बच्चा खड़ा है।

दूर मे एक आदमी बैठ कर है वो मास्क पहनकर है।

मंदिर का दीवार लाइट ब्राउन कलर का है।

यहा एक लड़का ब्लू कलर की टीशर्ट पहनकर बैठा हुआ है कुर्सी मे इस लड़के के सामने लकड़ी के बेंच है जिसमे बहुत सारी किताबे रखी हुई है।

यह रूम मे एक खिड़की भी है।

यह एक मंदिर के बाहर का पिक्चर है मंदिर में ताला बंद है और मंदिर के बाहर --

यहा बहुत सारी ब्राउन कलर की प्लास्टिक की कुर्सिया है और लकड़ी का अह टेबल है।

यहाँ पर टेबल पर बहुत सारी चिजे रखी हुई है जैसे कप खिलौने और क्रेओन ।

यह पिक्चर मे दो औरत है जो शॉपिंग कर रही है।